और इसका एड्रेस फ़ोन नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें यहां का गेट फ़िलहाल बंध नजर आ रहा है।

रेस्टोरेंट के बाहर का है जहां पर हमें रेस्टोरेंट लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। वही हम यहां पर--

यह कोचिंग सेंटर के अंदर का है जहां पर हमें एक टीचर डेस्क दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक रजिस्टर भी रखी हुई है।

बाहर से नी गई इस तस्वीर में हम एक मस्जिद दिखाई दे रहा है जोकि देखने में काफी बड़ा और सुन्दर लग रहा है।

दृश्य में हमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है जहा पर हम कुछ दुकान भी देख पा रहे है हमे यहाँ पर बिजली का टावर भी दिख रहा है।

यहाँ पर झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही एक कुत्ता बैठा हुआ है देख पा रहे हैं यहाँ पेड़ भी दिख रहा है।